हरे भरे पेड़ पोधे है और यह पिक्चर दिन के टाइम लिया गया है।

शॉल ओढ़ रखा है ये मकान के बाहर दो बाइक और एक साइकिल खड़ी हैं।

यह पिच्चर एक टेंट के अन्दर का है यह टेंट के अंदर एक लाल कुर्सी लगी हुई है यह कुर्सी के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठ कर है थोड़ी सी दूर में एक आदमी खड़ा है और यह आदमी--

या गेट के बाहर बोहोत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां है यहां यह मकान पिंक कलर का है।